इस इमेज में हमें फ- फलों की एक हम्म दुकान दिखाई दे रही है जिसमे सारे फल रखे हुए हैं। इन फ्रूट्स में रेड कलर के अनार रखे हुए हैं येल्लो कलर के केले रखे हुए हैं।

इस इमेज में हमें कुछ पैकेट दिखाई हैं। यह पैकेट ग्रीन कलर की पिंक कलर की ब्लू कलर की एंड येलो कलर की दिखाई गई है।

इस इमेज में हमें बड़ी सी थाली दिखाई गई है यह थाली ब्लैक कलर की है इसमें यहाँ पर कुछ प्लेट्स रखी हुईं हैं जिनमे सब्जी और अ दाल रखी हुई है।

और कुछ चावल रखे गए हैं इसके अलावा सेलड़ रखी गई है | सेलड़ में यहाँ पे प्याज़ एण्ड खीरे रखे गए हैं और यहाँ पर टेबल दिखाया गया है।

इस इमेज में हमें यहाँं पे एक स्टेशन दिखाया गया है। जिसमे यहाँं पटरिया लगी हुई है। इसके अलावा एक ट्रेन भी दिखाई गई है। ट्रेन में यहाँं पे डब्बे हैं। जिसमे ओरेंज़ एंड व्हाइट कलर के साथ ब्लू कलर भी दिखाया गया है।

इमेज में हमें लकड़ियों से बने हुए सोफे दिखाए गए हैं और कुछ चेयर्स दिखाई गईं हैं। अ सोफो में यहां पर पर्पल कलर के कवर डले हुए हैं।

इसके अलवा स्काई दिखाया गया है जिसमें हमें व्हाइट एंड स्काई ब्लू कलर दिखाया गया है इसके अलावा एक ग्राउंड है छोटा सा जिसमें छोटे-छोटे पत्थ --

यहाँ पे हमें एक बड़ा सा हेलिकॉप्टर दिखाया गया है। ये इसका कलर व्हाइट दिखाया गया है। यहाँ पे कुछ पब्लिकस भी दिखाई गई है ऑटो दिखाया गया है। जिसका कलर री --

एक टी शर्ट पहनी हुई है। नीचे लोवर पेहना हुआ है और यहाँ पे कुछ ब्रिज भी दिखाए गए हैं। ब्रिज लगे हुए हैं। कुछ बड़े-बड़े पेड़ दिखाए गए हैं | इसके आलवा कुछ दुकाने भी यहाँ पे दिखाई गई हैं।

इस इमेज में हमें एक हाथ दिखाया गया हैं जिसमें फ्लावर रखा हुआ है। जो व्हाइट कलर का है और हमें यहाँ बड़े बड़े पेड़ दिखाए गए हैं। कुछ छोटे छोटे पौध --

इस इमेंज में हमें हाथ दिखा रहा है जिसमें सुन्दर सा कप रखा हुआ है। ये कप रेड कलर का है। इसके अन्दर कॉफ़ी रखी हुई है और बड़ा सा ग्राउड बना हुआ है इसमें छोटी-छोटी दुआएं लगी हुई हैं।

इस इमेज में हमें क्लास दिखाई गई है क्लास में यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पे चेयर्स लगी हुईं हैं जो ब्राउन कलर की हैं।